ये मुझे चाय बागान जैसा दिखाई दे रही है।

ओल का गास भी दिखाई दे रही है।

यहां मुझे एक घर जैसा दिखाई दे रही है।

बहोत सारा लुक है यहा में।

खिड़की में ब्राउन कलर का पर्दा लगा के है।

ये मुझे केक का जैसा दिखाई दे रही है।

यहां मे मुझे बहुत सारा केक दिखाई दे रही है।

साइड साइड में फूल पॉट लगा के दिखाई दे रही है।

ये मुझे रिजॉर्ट जैसा दिखाई दे रही है।

यहां में बहोत सारा समान भी रख के दिखाई दे रही है।

टेबल जैसा भी दिखाई दे रही है।

साइड मे कुछ ब्लू ब्लैक टाइप से दिखाई दे रही है मुझे।

मिट्टी भी खोद के है।

यह मुझे रस्ता जैसा दिखाई दे रही है।

यहां मुझे स्कूटी गाड़ी लोग बहुत सारा दिखाई दे रही है।

इनका बाहर चार आदमी दिखाई दे रही है।

ये मुझे पत्थर जैसा दिखाई दे रही है काला काला से--

गाड़ी लोग भी दिखाई दे रही है।

पीछे में कुछ फोटो लगा के है।

मुझे यह एक रेस्टोरेंट की तरह दिखाई दे रही है।

पीछे में कुछ फूल का घास का जैसा दिखाई दे रही है।

नीचे में वॉल के जैसा भी दिखाई दे रही है।

यहां मुझे बहुत सारा बाल्टी दिखाई दे रही है।

पीछे में भी दिखाई दे रही है।

रोड भी दिखाई दे रहे है।

बिल्डिंग का ऊपर फोटो भी लगाके दिखाई दे रहा है।

ये मुझे बेडरूम की तरह दिखाई दे रही है।

रोड भी दिखाई दे रही है।

यहां दो इंसान भी दिखाई दे रही है।

ये मुझे एक घर का बाहर जैसा दिखाई दे रही है।

गाड़ी जैसा भी दिखाई दे रही है।

सीढ़ी जैसा भी दिखाई दे रही है।

यहां एक आदमी भी दिखाई दे रही है।

यहां मैं बहुत सारा मंदिर का सामान भी दिखाई दे रही है।

यहां में बहुत सारा जिम की सामान भी दिखाई दे रही है।